यह फोटो एक व्यायामशाला की है जहां ढेर सारे लोग आकर कुछ लोग रेस्ट कर रहे है कुछ लोग व्यायाम करते हुए दिखाई दे रहे है।

दिख रहा है तैयार किया गया है और चारों साइड बेठने के लिए जगह तैयार की गई है और यहां पे गेस्ट के लिए भी जगह रखी हुई है।

यह फोटो एक सपोर्टस के दुकान की है।

यह फोटो एक योगा क्लासेस की हैं जहाँ ढेर सारे आदमी औरत बैठ के योग करते दिखाई दे रहे है।

यह फोटो एक चौड़े सड़क की है। जहां एक व्यक्ति टहलता ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इस --

यहाँ काली सफ़ेद और लाल मछलियां भी हैं ग्राहक इन मछलियों को खरीद रहे हैं। और घर पे जाके इन मछलियों की सब्जी बनाएंगे।